एक गाड़ी पे एक बैग टंगा हुआ है | आसमान दिखाई दे रहा है ।

लिप केयर कुछ बैग्स दिखाई दे रहे हैं पैकेट दिखाई दे रहे हैं जोकि पीले हरे सफेद लाल इत्यादि कलर के दिखाई दे रहे हैं ।

जोकी काले कलर का दिखाई दे रहा हैऔर सफेद कलर से लिखा हुआ है बाहर कुछ मैदान दिखाई दे रहा है साइकल दिखाई दे रही है जोकि आधी नजर आ रही है ऊपर पत्तियां दिखाई दे रही है।

यहां एक गेट दिखाई दे रहा है जोकी बंद है और उसमे से आधा गेट खुला हुआ है।

ऊपर गेट नीले कलर का दिखाई दे रहा है | जिसपे सफ़ेद कलर का लिखा हुआ है | एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं एक चबूतरा दिखाई दे रहा है ।

जिसके ऊपर बोर्ड दिखाई दे रहा है जोकी नीले कलर का है और सफेद कलर से लिखा हुआ है।

जहाँ पे कुछ मशीनें रखी हुई हैं जो कि वर्क आउट के लिए हैं वेट लिफ्टिंग के लिए मशीन है।

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है जोकि जिम का हॉल है ।